बाहर की तरफ एक खंभे लगे हैं इसपे गोल सा बना हुआ है उसके पास एक आदमी खड़ा है।

और पीछे बहुत सारे घर बने हुए हैं एक अंदर लकड़ी बहुत बड़ी सी लगी हुई है।

और एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है उसके आगे बहुत से पेड़ लगे हैं।

और काउंटर है इसके पे बहुत सारी स्कीमें रखी हुई हैं पीछे की तरफ बहुत सारे पोस्टर दीवार पर चिपके हैं।

और बहोत सारे के अंदर बहोत सारा सामान रखा है।

और सी_सी_टी_वी कैमरा लगा है ऊपर येलो कलर की लाइट जल रही है और कैमरा लगा हुआ है।

यह एक कार मैकेनिक की दुकान है।

ये एक योगा वाला में बहोत बड़ा गेट लगा है फराटा रखा हुआ है बहुत औरतें योगा के रही हैं।

ये एक कपड़ों के दुकान दिखाई दे रही है बहोत बड़ी इसमें कैमरे लगे हुए--

बहुत से कपड़े रखे। इधर एंकल लगा। उसमें भी बहोत सारे केप कपड़े टंगे हुए --

और अं पीछे बहोत सारे सजावट हुई है फूल भी लगे हुए हैं।

पर्दे भी लगे हुए हैं और ऊपर एक मकान है।

ए और टेबल लगी हुई हैं कुर्सियां लगी हैं और उसपे प्लेटें लगी हुई हैं।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

मे एक आदमी लोग सब को दे रहे हैं खाने के लिए कुर्सियाँ बहोत सारी हैं बहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

और सामने दो मकान बने हुए हैं ब्राउन कलर ब्राउन कलर का पेंट है वाइट कलर का पेंट --

और रोड है। रोड पे एक कार खड़ी कार के अंदर एक आदमी बैठा है। साइड में एक बस है।

और एक दीवा दीवाल है दीवार पास बहोत सारा सामान रखा हुआ--

टेबल रखा है दो कुर्सी रखी हुई साइड में बोर्ड लगा हुआ है कारों --

का फोटू और ये दो बोर्ड खड़े हुए हैं।

पिंक कलर से अह लाइटें लगी हैं और एक कैफे है उसके सामने स्कूटी है।

और एक ऑटो पास आदमी खड़ा हुआ है। एक बस के पास आदमी खड़ा हुआ है। एक --

बस के आगे खड़ा हुआ है और रोड पर पानी पड़ा हुआ है।

सामने की तरफ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं कुछ रखा हुआ लाल लाल सा बना हुआ है।

इधर कुर्सियां रखी हुई और एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

पूजा हो रही है फूल रखे हैं लड्डू रखे हैं।

और बहुत बड़े बड़े पेपे लगी हुई हैं बहुत लोग काम कर रहे हैं उधर।

इनमें सरिया पड़ी हुई है एक आदमी इसपे उसके ऊपर खड़ा--

पीछे एक दीवाल है और उसके उधर बहुत छोटे छोटे पेड़ लगे हुए घासे और घर भी बहुत से बने वहां बस एक पेड़ लगा है।

और बहोत से लोग खड़े हुई हैं बहुत औरतें खड़ी हुई हैं।

ये एक कपड़े की दुकान है अंदर ड्रोर में बहोत से कपड़े दुपट्टे रखे हुए हैं।

और एक घोड़े के पुतली बनी है और बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और--

इसके अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ है पेन टेबल रखे हुए हैं और सामने तस्वीर लगी हुई हैं बोर्ड लगा है।

और ओ एक इधर कुर्सी रखी दो हैं और टेबल रखा उसके पे एक पेड़ रखा बाहर बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

मिठाई की दुकान भी हैं इसमें बहुत सी मिठाई रखी हैं ऊपर की ओर लाइटें जल रही हैं।

दो औरतें खड़ी हुई हैं और नीचे की तरफ फर्श टाइल्स लगी हुई है।

और बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं उधर भी बना हुआ है।

बहुत से लड़के हैं और लड़कियां साड़ी पहने हुई हैं।

ये सोलर पैनल भी लगा हुआ है और रोड सजी हुई इस पर झालर लगे हैं।

इधर साइड में भी घर बना हुआ है दो मंजिल का। ये साइड में भी खंभा लगा घर बना है।

कलर से लिखा है पट्टी बनी है ऊपर बोड ल रखे हुए लाइटें लगी हुई है और सामने की साइड में एक बोड बहोत बड़ा सा लगा है।

सामने की तरफ शीशे की रेलिंग बनी लगी हैं।

ग्रे हेडेड सेम्पन पक्षीया खड़ा हुआ है और पीछे बहोत बड़ा जंगल है।

शीशे में पीछे का सब कुछ दिखाई दे रहा है और नीचे में मशीने रखी हुई हैं।

इसमें सामने की तरफ बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

और एक मूर्तियाँ रखी है और ऊपर एक डिब्बा रखा हुआ है। टोकरी रखी है। उसके अंदर सामान है।

सामने की तरफ एक कमरा है इसमें सीढ़ी रखी हुई दिवालें बनी हुईं जंगल जैसा लग रहा है।